एक गाड़ी दिखाई दे रही है जो की सफेद रंग की है।

एक इमारत बनी है बड़ी सी जिस पर खिड़कियां बनी है।

ऊपर हरे रंग की जाली लगी है जिसके नीचे--

नदी के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी है पहाड़ी पर कुछ पेड़ पौधे भी लगे हैं।